सामने की तरफ एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है सामने की तरफ बैठने की जगह बनी हुई है सामने की तरफ एक बोरी रखी हुई है ऊपर की तरफ एक टंकी रखी है।

एक बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है साइड में काफी सारे छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

साइड में और पीछे की तरफ काफ़ी बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है पीछे की तरफ काफी सारे घर बने हुए दिखाई दे रहे हे और पीछे खम्बे भी दिखाई दे रहे है।

पुराना है साइड में बाउंड्री बनी हुई है पीछे की तरफ काफी सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है और पीछे घर जैसा बना भी दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ बिल्डिंग का द्वार बना हुआ दिखाई दे रहा है जिस के ऊपर कुछ लिखा है साइड में बाउंड्री बनी हुई है।

इसमें सामने की तरफ एक सड़क जैसे दिखाई दे रही है सामने इसमें नाली बानी हुई है साइड में कुछ घर बने हुए दिखाई दे रही है।

इसमें सामने की तरफ मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में कहीं- कहीं पर घास लगे हुए है सामने की तरफ एक बोर्ड लगा है जिसपर --